यहाँ पे दिन में चार बार नमाज पढ़ा जाता है।

हर को हर कोई लोग यहाँ पे डेली वेजेस में काम करते है।

ये चर्च है यहाँ पर क्रिस्टियन समाज के लोग --

नाइनटी परसेंट किसान धान उ पैदा करते हैं।

यह पेट्रोल पंप इंडियन आयल का है ।

ये मंदिर है यहाँ पर हर कोई पूजा करते है हिन्दू समाज के लोग लोग लोग यहाँ पे हर रोज पूजा करने आते है बहुत ही--